इसकी छत पे रेलिंग पे तीन चार फूलों की माला टंगी हुई है।

यह एक चित्र है जिसमें दिखाया गया है कि बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं।

पेड़ लगे हुए हैं इसकी छत में पंखे लगे हुए हैं विंडो लगी हुई है।

यह एक चित्र है जिसमें दिखाया गया है कि यह एक कंपनी बनी हुई है कंपनी के अंदर बहुत सारे मैकेनिक काम करने वाले खड़े हुए हैं।

स्नान कुछ व्यक्ति स्नान कर रहे हैं कुछ व्यक्ति पूजा के फूल बिखेर रहे हैं।

इसके पास में पे पेट्रोल डीजल रखा हुआ है।

यह एक चित्र है जिसमें दिखाया गया है कि एक मस्जिद बनी हुई है मस्जिद के अंदर बहोत सारे बच्चे पढ़ रहे है।

यह एक चित्र है जिसमें दिखाया गया है कि एक प्लेटफार्म बना हुआ है।

और थोड़ी ही दूर बहोत सारी लड़कियां पड़ी है लक्कड़ पड़े हैं।